कुर्सी दिखाई दे रही हैं कुछ लोग फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं हाथ मैं थे--

टॉवर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और टोपा दिखाई दे रहा है एक भैया के सर पे शूज दिखाई दे रहा है मिट्टी घांस दिखाई दे रही है।